रिसेप्शनिस्ट को पीछे एक गणेश जी का मूर्ति है उसके बगल में एक कैलेंडर टंगा हुआ --

यहाँ पे बहुत सारे टाइप के छेद वाले लोहे है और ऊपर हमें एक चकोर लोहा है जिसमें इसको फिट कर रहा है।

यह मछली का उम पकर उम पकड़ कर मार्केट में बेचने के लिए कैरेट से ले जा रहा है।